पेट्रोल भरवाया जाता है यहां पर एक डीजल की मशीन है दूसरा --

यहां पे लड़कों के निक्कर बनियान मिलते हैं।

प्रसिद्ध मंदिर है यह लाल रंग का है।

यहां बाहर काफी सारे स्कूटर रिक्शा लगे हुए हैं।

यहां तीन शटर है यहां कुछ पानी की बोतले है यहां एक पंखा लगा हुआ है।

तालाब के बीचो-बीच बहुत सारे पेड़ हैं तालाब के किनारे हाथी --

जहां पर लोगों ने कपड़ों की मदद से छोटे-छोटे --

पहिए में से पानी निकल रहा है तथा यहां पे --

यहां हर एक कमरे में एक-एक खिड़कियां हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक पेट्रोल पंप है।

पेट्रोल भरवाने कुछ गाड़ियां आई हुई है यहां पे एक पेट्रोल का टैंक आया है।

पहाड़ और पानी का मिश्रण दिखाई दे रहा है यहां पे --

यहां पे कुछ पुरुष और महिलाएं दूध लेने आए हुए हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक रेल्वे स्टेशन है यहां पर कुछ --

यहां पर एक ऐ.सी. लगा हुआ है यहां पर एक पलंग लगा हुआ है।

तरीके से फूलों की सहायता से सजा रखा है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक --

कार्यालय के बाहर एक व्यक्ति खड़ा है।

यहां पर काफी सारे पेड़-पौधे भी हैं।

इस समुंदर के बीच में चक्रवात आया हुआ है यहां मानो --

सारा पानी नीचे की तरफ खींचता जा रहा है।

पुल का निर्माण हो रहा है यह पुल लोहे की धातु से बनाया जा रहा है।

सीट से चुनाई कर रहे हैं।

लाइटों से सजा रखा है यहां पर कुछ व्यक्ति बाहर हैं और कुछ गाड़ियां भी बाहर हैं।

तथा एक बहुत ही प्यारी सी मूर्ति बनी हुई है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक चर्च है यहां पे --

बहुत ही सारे वाद्य यंत्र है।